यह एक दुकान है जिसका ऊपर में लिखा हुआ हैं पियोनि यूफी लोखपाल एसएससी गाँधी मार्केट मोबाइल नंबर अठासी पन्द्रह --

ग गाड़ी खड़ा है। गाड़ी के बगल में एक भैंस है।

और एक टीटी भी है जो --

एरोफ्लान्स जो कलर भी है बहुत अच्छा और एक वर्कर भी है।

पूरा ह बड़ा-बड़ा दीवाले है जो टीनो से सजाया गया है।

नीचे में बहुत सारे पीलरी बनी हुई है।

और बरंडा भी है जो बहुत सुन्दर दिख रहा है।

बॉडी बना रहा है और साइडस में बोहुत सारी डमब्ले अनेकों प्रकारो की जिम की सामाने रखी हुई है।